एक मंदिर है मंदिर के नीचे घाट जैसा बना हुआ है काफी सारे बल्ब लाइटिंग व्यवस्था लगी हुई है ये कहा का मंदिर है ये कह नहीं सकते क्युकी मै कभी गया नहीं यहाँ।